उम्म एक बेड है दो तकिया है एक बैग है और इसमें रिमोट्स हैं। अन एक टोपी है और व्हाइट कलर का द् पेंटेड रूम है और इसमें ए.सी. भी लगा हुआ है।

पीछे में बलून है ये काफी फ्रेश एंड क्लीन रूम है।

और चारो तरफ हरियाली है काफी सुन्दर पेड़-पौधे लगे हुए है।

ये पांच अ फ्लावर वेसल हैं जिसमें अलग तरह के आ अ प्लास्टिक फ्लावर आप घर में लगा सकते हैं।

ये एक कमरे का ड्रॉवर है। यह अलमारी है जोकि काफी खूबसूरत है। ये भूरे कलर का अलमारी है। जिसमें की जो काफी मॉडर्न है। उसके बगल में टेबल है।

ये एक क्लासरूम है जिसमें कि लोहे और लकड़ी के बेंच लगे हैं डेस्क लगे हैं। इसमें व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड लगे पड़े है।

ये काफी ओल्ड इमारत है और ये देखने में काफी सुन्दर लग रही है।

ये बनारस के गंगा नदी की तस्वीर है अं जिसमें कि बोहोत सारे नाव दिख रहे हैं और ठंडी के दिनों में साइबेरिया से आए हुए साइबेरियन पक्षी हैं।

दो इस साइड दो उस साइड और ग्रीन अ मेट है और सारे प्लेयर अ इंडो - स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं।